ए गाड़ी में जरा सु साइकिल कुछ ठेला नजर आ रहे है कुछ लोग खड़े हैजो दो जीन्स और कमीज पेहने हुए है और टी-टाली टीना का--

नदी के सामने बड़ा -बड़ा पेड़ नजर आ रहे है कुछ पत्थर नजर आ रहे है कुछ घासे नजर आ रही है कुछ दीवारे कुछ पहाड़े नजर आ रही हैं।

खजूर के पेड़ नजर आ रहा है ताड़ का पेड़ नजर आ रहा है आम का पेड़ नजर आ रहा है कुछ घड़ी नजर आ रहा है घोड़ा नजर आ रहा है गा--

टेबूल नजर आ रहा है कुता नजर आ रहा है।

रंग नजर आ रहा है छत नजर आ रहा है प्लाइ नजर आ रहा है।